यहाँ पे स्कुल या कॉलेज जैसा दिखाई दे रहा हैं अंदर में बहुत सारे --

और यहाँ पे पूल में जो पानी है वो अजीब सा मे --